एक लड़का है और एक बलूंस लगे हुए बहुत सारे फुग्गा लगा हुआ है।

वो अपना काम कर रहा और बोहत सारी मशीन लगी हुई है।

अ एक वेन खड़ा है एंबुलेंस और दो--

जो सामने बोर्ड टंगा हुआ हैं।

झूला वगैरह लगा हुआ है और एक दीवाल हैं।

दो तीन फीट का दीवार में ख झंडा लगा हुआ है पेड़ भी है।

पालर में एक लड़की अपने बालों का डिजाइन बनवाई हैं।

बगल में आ मतलब जैसे अलमारी जैसे रखा है जिसमें सामान रखाया हुआ हैं ।

किनारे पे पेड़ लगा हुआ है फिर एक टावर हैं।

अ मतलब हाॅल है जिसमें दो -तीन स्टैचू रखे है जिनके सिर अलग हैं।

जिसमें माजा रखा हुआ है और बहुत सारे मसाले के पैकेट रखे हुए हैं।

प्लस टेबल पे बहोत सारा प्लेट जमा कर रखा गया है और दो प्लेट में--

ये एक कॉलोनी है कॉलोनी में दो सड़क है सड़क के बीच में --

ये कोई तीर्थ स्थल लग रहा है जहां पर यज्ञ होता है।

आ सिर में टोकरी में फल- फूल गन्ना वगैरह रखे हुए हैं।

पहाड़ दिख रहा है किनारे-किनारे में नीला आसमान दिख रहा है सूरज की रोशनी दिख रही है और तटे पे --

अ शोरूम के बाहर में मारुति सुजुकी लिखाया हुआ है।

एक गेट है जो बाहर आने के लिए है और अंदर में बहुत सारा लाई --

और पेड़ भी लगे हुए हैं पाइप भी हैं।

ये एक नदिया है। नदिया में दो ओवरब्रिज दिखाई दे रहै हैं।

ऑफिस में कुर्सी नजर आ रहा है ऑफिस के बगल में मैदान में --

कार नजर आ रहा है फिर इधर ट्रांसफार्मर नजर आ रहा है।

और वहां पर प्लेटफार्म में एक आदमी खड़ा हुआ है।

सिनेमा हॉल है सिनेमा हॉल के सामने में एक--